बलून का डेकरैशन है बलून टू कलर्स के है ब्लू एण्ड व्हाइट

बगल मे हरी - हरी घास है पेड़ है कुछ दूर पे पेड़ है पिलर है।

जैसे व्हाइट येलो एण्ड पोस्टर्स पे कुछ चीजे लिखी--

पिंक स्काइ है एण्ड पिलर है।

ये एक इमेज है जहां पे एक लॉयन है उसके अगल बगल घास है पेड़ है।

बाबा के साइड मे अ कैडल्स है दीपक है।

ये एक ग्रीन कलर की रिक्शा है अ जो बहुत डिजाइन की हुई है और इसमे डिजाइन है येलो कलर ।